हरा दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान नजर आ रहा है आसमान का रंग नीला नजर आ रहा है।

यहाँ एक मार्केट नजर आ रहा है जहाँ पर बोरियों में कुछ सामान रखा हुवा है बोरियों का रंग सफ़ेद नजर आ रहा है।

कुछ हरा हरा हरा रखा हुआ है म-म मैदान में हरी हरी घास दिखाई दे रही है।

यह एक आदमी लेटा हुआ है दूसरा आदमी उसका चेक-अप कर रहा है।

यहाँ एक सुंदर सी इस्टेज दिखाई दे रही है जिसपर दो कुर्सियां रखी हुवी है कुर्सियों के रंग सफ़ेद नजर आ रहे है।

पीछे पेड़ दिखाई दे रहें हैं पेड़ो का रंग हरा नजर आ रहा है यहाँ मिट्टी नजर आ रही है मिट्टी में एक फूल दिखाई दे रहा है।

यहाँ पत्थरों के बिच से पानी बेहता हुआ नजर आ रहा है पानी का रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है।